लाल रंग से पुता हुआ है उस पर सुनहरे एवमं सिल्वर कलर से पेंट है।

यहाँ पर ये किसी सड़क का दृश्य है जिसमे सड़क के साइड पर एक पेट्रोल पंप और एक दुकान है पेट्रोल पंप के बराबर में --

आगे पेड़ पोधो से घेरा हुआ है उसके आगे कुछ घर एवम टावर एवम लाइट के खम्बे है।

यहाँ पर म्यूज़ियम में एक मूर्ति बनी हुई है जिसमे एक ओरत ने एक बच्चे को गोदी में ले रखा है।